नीचे नदी बह रही है। ऊपर आशमान काफी प्यारा नजर आ रहा। सामने में एक वो दूर से ट्रांसफर्मर भी नजर आ रहा पौधे भी दिख रहे हैं पेड़ घर भी कुछ कुछ नजर आ रहे है नीचे नदी में कुछ-कुछ लोग भी नजर आ रहें --